यहाँ पर एक घास वाली जमीन पर जो की गार्डन सा दिख रहा है सफेद कलर की टेबल और चेयर लगी हुई हैं जिन पर सफेद और पर्पल और पिंक कलर की बिछात हुई है।

और कुछ दब छोटे-छोटे पेड़ भी हरे-हरे दिख रहे हैं।

चश्मा लगा हुआ है टेढ़ा हेयर स्टाइल है नीचे में ब्लैक कलर के पत्थरों का बना हुआ है और ऊपर में एक स्टार बना हुआ है क्रीम कलर की वॉल है और ग्रीन कलर की नीचे की बॉर्डर दी है।